एक छोटा सा ग्राउन्ड दिख रहा है। जिसमे बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

कैमरा दिख रहा है। कैमरा मैन दिख रहा है। कुछ कुर्सीयों पे कुछ लोग बैठे हैं।

दीवार पे दो पंखे एक लीईडी लाइट दिखाई दे रही है।

चेयर्स दिखाई दे रही हैं। रेड कलर की कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रही हैं।

उसके गेट पे कथि कलर पुता हुआ है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एक लेडी ने लाइट पिंक कलर की साडी पहने हुई है एक --

तरबूज़ पपीता आम अंगूर अनार संतरा मोसम्बी जामुन --

ये डेनिम सैलून लिखा हुआ है। कुछ जेंट्स की फोटोज़ लगी हुई हैं।

मस्जिद के बगल में एक बिल्डिंग है। उस पे एक वाइट टंकी दिखाई दे रहा है। ईंटे दिखाई दे रही हैं।

पेन पेंसिल दिखाई दे रहीं हैं। एक जेंट्स दिखाई दे रहे हैं।